और बाहर के एरिये में टोय ट्रेन बच्चों की अवेलेबल लगी हुई है।

मेरे कॉलेज ऊपर बोहोत सारे कच्चे केले लगे हुए हैं।

जिम का उद्घाटन हुआ है जिम पर बहुत सारे --

यहां पे स्कूल में जालियां लगी हुई हैं। जालियों का रंग लाल है।